किचन-डिनर-फूड इट टेस्ट डिनर यहाँ पे टेबल पंखा बुक चॉकलेट पढ़ने का व्यवस्था सब कुछ है।

यह भी एक होटल है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अजीबो-गरीबो हो इंसान का आना-जाना है ऐ.सी है लाइट है पंखा है।

रुफ टॉप है। लाइट है।

-- देखने मे सुंदर है अति सुंदर--